वॉल कंपाउंड दिख रहा है एंड एक दीवाल है घर है हमें और कुछ खिड़की दिख रही है बा बाहर में --

का सीढ़ी पर और साइड में दो ट्रकों दो दो लाइटे पीछे में कुछ मशीन दिख रही है।